वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि व्हाईट एंड ब्लैक कपड़े पहन--

बोर्ड वाइट रंग का है उसके ऊपर लिखा हुआ है ए--

एक आदमी सामने बाइक पर बैठा हुआ--

जे एक पारक है पारक के अंदर एक झूला लगा हुआ है।

ये है और भी बहुत शीशियां पड़ी--

जिस पर व्हाइट रंग का कपड़ा बिछा हुआ है और ऊपर छत पर बैलून ल--

खुला सा कमरा नजर आ रहा हैं।